नीचे कुछ खिड़कियां है और थोड़ा से में ऑरेंज कलर किया गया है।

सामने बहुत से रंग बिरंगे साइकिल रखे हुए हैं।

इस दृश्य में दिखाई दे रहा है कि यह एक चौराहे का स्थान है।

पीछे एक दो पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं।

इस दृश्य मे दिखाई दे रहा है कि यह एक साड़ियों का दुकान है।

ऑटो नजर आ रहा है एक ठेला नजर आ रहा है।

यहां पे बहुत सारे बोटलस रखे गए हैं मिरर की।

सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिस ने पिंक कलर का शर्ट पहना है।

पीछे ब्लैक कलर के कंटेनर रखे हुए हैं।

दोनों फ्लोर पे अ चारों तरफ लोहे का ग्रील दिया गया हैं नीचे कुछ दुकानें है जैसे बिग बाजार नाम का है ।

इसके पीछे बहुत से बड़े बड़े और आगे छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाए गए हैं।

एक ऑटो वाला ऑटो लेकर खड़ा है एक रिक्शावाला है और एक ब्लैक कलर का बाइक है जिस पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है।

येलो कलर के भी टेबल रखे गए हैं एक व्हाइट कलर का डेस्क बना हुआ है।

एक पर्दा लगा हुआ है जो की ब्लैक कलर का है।

इसमें पांच गेट हैं जिसे कि येलो येलो में पानी आ रहा है।

कुछ पेड़ पौधे जो की नी बगल में हैं।

इस दृश्य मे दिखाई दे रहा है कि यह एक होटल है जिसमें कि ब्लू कलर का टेबल लगाया गया और बैठने के लिए ग्रे कलर का चेयर लगाया गया है।

बहुत सी लाइटें लगाई गई है नीचे कुछ पौधे भी रखे गए है।